यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है जहाँ पर--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

कुर्सियां लगी हुई है और यहां पर बहुत सारे सामान रखा हुआ है और हम--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

कुछ लोग यहां पर फोन में बातें कर रहे कुछ लोग दिखा रहे हैं।

छत हरे रंग के हैं और इधर-उधर बहोत बड़ा गार्डन है जहां पर हरे हरे रंग के पेड़ है और इधर-उधर बहुत अच्छे-अच्छे फूल है जहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुवा हैं और यहाँ पर--

जहां पे रेक्स भी बनाए गए हैं जिसमें पैट वगैरह की--

ये मूर्तियां लग लगी हुई है और यहां पर एक गेट भी है जहां पर--

और यहां पर बहुत बड़े बड़े बड़ा पहाड़ है और यहां पर कोई भी लोग नहीं जा रहे हैं।

और यहां पर बीड़ी भी आ रहा है और यहां पर रखे हुए बहुत सारी चीज़ें हैं।

है बस से जा रही है एच_आर_टी_सी बस से जा रही है जहां जो जाम में फंसी हुई है।

और साइनीज भी लगे हुए हैं एक चिल्लर दो चिल्लर दिख रहे हैं यहां पे एक चिल्लर खाली है एक में कुछ डेहरी का सामान है जिसमें मक्खन बटर और सब कुछ--

हाँ है इसमें दूध वगैरह रखा हुआ है ऊपर उसके ऊपर ट्यूब है आगे कंफेक्शनरी का सामान--

और यहां पर बहोत सारी लाइट्स वगैर लगी है बिल्कुल चमकदार लग रहा है।

कॉफी वगैरा के जार रखे हुए हैं जिसके कॉफी भरी हुई है और यहां पर कोई भी नहीं है और यहां पर बहोत सारा--

जहां पर तीन-चार नावे है जो बिल्कुल खड़ी हुई है कछुआकार में कुछ छोटी-छोटी नावे है जहां पर--

और बहुत ही अच्छा है यहां पर लाइट्स वगैरह भी है और यहां पे कोई भी नहीं है सजा हुआ है।

पेड़ों के वो बंच पकड़े हुए हैं तीन बंच नीचे फेंके हुए हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जहां पर तीन टाइप्स की बालकनी है और यहां बहुत लंबी चौड़ी है और यहां पर कोई भी आदमी नहीं है।

रेत के वो वो भी दिख रहे है एक ड्रम दिख रहे है और बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है बाकी कोई भी तिनके तक नहीं सूर्य की रोशनी --

कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोनों आपस में--

इधर उधर कोई भी लोग घूम नही रहे हैं क्योंकि इस टिम का टाइम है और उस टाइम कोई नहीं--